बहुत सारी लाईट भी लगाए गए हैं यह पडांल --

इधर से उधर आते जा आएंगे।

यह एक फील्ड है। यह फील्ड में बहुत सारे बच्चे फुटबॉल खेलते हुए है दिखाई दे रहे है। यह बच्चे फुटबॉल खेलने की कपड़े पहने हुए है।